फोटो में एक बहुत बड़ी सी नाला है डाला किनारे पूरे--

यह फोटो में एक बहोत बड़ा ऑफिस है जिसमें--

और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रे हैं बड़े से आसमान है।

रोड पे दो इंसान चलते हुए जा रहे हैं।